जिसपे बहोत सारी गाड़ियां पार्किंग पे भी लगाई हुई है।

और कुछ आर्टिस्ट के पुतले बनाए हुए हैं जो कि भांगड़ा कर रहे हैं।